और घर भी दिखाई दे रहा है ऊपर से।

ऐसे लगता है ये बाढ़ आया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारा ब्रिज भी दिखाई दे रहा है।

परी के रूप में लड़की खड़ी है। उसके साथ तीन लड़का खड़ा है।

यहाँ पे घर बन रहा है | इसमें बहोत सारे पिलर खरा है | उसमें छड़ भी दिखाई दे रहा है एक हॉल भी बनाया हुआ है |

और वाइट और काला कलर का है। घास बहुत सारा जमा हुआ है।

ये दिखने से लगता है स्टेशन का जगह है। ये जगह --

फोटो भी दिखाई दे रहा है। उसमे फल का फोटो दिख रहा है।